बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है नीचे बहुत बड़ी टाइल्स लगी हुई है ।

लहसन बोहोत सारी एक टोकरी में रखी है एक लेडीज नीचे बैठी है।

बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं लाइटें लगी हुई है।

वहाँ पुते वाइट कलर के पुते हुए हैं बहुत सारी रेड कलर की कुर्सी रखी हुई है।

रेड कलर की टेबले रखी हुई है उसपे बहुत सारी मोमबत्तियाँ जल रही है ।